यहां पे डाइम डैम दिखाई दे रहा है बहुत बहाव से पानी आ रहा है।

और जो दो लोग हैं एक अंकल और एक आंटी खड़े हैं फोटो ले रहे हैं।

और एक चार लड़कियां एक स्टेशन पे है।

उन्होंने ब्लैक ब्लू कलर का जींस पहना है ब्लैक कलर के शूज पहना है।

व्हाइट कलर का शर्ट पहना उन्होंने और आजू बाजू बहोत सारे पेड़ है और वह बीच में खड़े हैं एक बंबू के सहारे ओ--

और जो लड़कियां हैं वो उन्होंने नकाब पहना है।

और सब लोग बैठे है फ्लोर पे फ्लोर जो है व्हाइट और आ ब्राउनिश टाइप दिखाई रहा है अ ब्लैक कलर का और --

और ये जो है वो येलो कलर का पेंट किया है बहोत लोग खड़े हैं।

और फिर अ एक अंकल खड़े है जिसका कैप लगाया है उन्होंने --

यह एक कैफे हैं जिसके अंदर एक इंसान कॉफी सर्वे कर रहा है।

और बीच में एक बाइक है बाइक में भी पेट्रोल भर रहा है और तीन लोग ब्लू कलर का शर्ट पहने हैं।

और बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है गहरा पानी दिखाई दे रहा और एकदम लास्ट में बहोत सारे पेड़ भीं दिखाई दे र --

और बहुत सारे अह विंडो जैसा दिखाई दे रहा है और बड़ा दो विंडोज है जिसके अंदर से प्रकाश आ रहा है।

और बहोत सारी वेट लिफ्टिंग्स है येलो कलर और ब्लैक कलर में है और एक इंसान है जो सेल्फी ले रहा है मीरर में --

यहां पे आजू बाजू में ग्रास लगाया है ट्रिज लगाए और बीच में एक डाइनिंग टेबल जैसे लगाया है टेबल और चेयर लगाए हुए हैं।

ये एक लेक टाइप है यहां पे ब्लू कलर का एक बोट है और एक अ पुराना सा बोट --

और एक ऑरेंज कलर का टेंट जैसा लगाया हुआ है बंबू भी है यहां पे उसपे सपोर्ट के लिए।

ब्लू कलर का भी है और ग्रीन कलर का एक अ दिखाई दे रहा और येल्लो कलर का--

और यहां पे बैठने के लिए व्हाइट कलर का और ब्लू कलर के च अ सीट बनाया गया है।

और आजू बाजू में पूरी पेड़ दिखाई दे रहे हैं बहोत ही हरियाली जैसे और एक नाला भी है बीच में।

ये एक पुराना घर दिखाई दे रहा है अ जो कबले से बना हुआ है ऊपर --

पौला लगाया हुआ है और अ सामने ट्री लगाया हुआ है।

ये एक बहुत ही अच्छा वाला प्लेस सीनरी का फोटो दिखाई दे रहा।

अ एक साइड में पूरा अ रेत दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ पूरा पानी पानी।

और बहुत सारा अअ लिखा हुआ है सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करता है।

और बहोत सारे ए_सी जैसे लगाया है नीचे फ्लोर जै --

यहां एक माउंटेन के बीच में से फोटो लिया है।

बहोत बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहा और बीच मे से पानी बह रहा--

वाटरफॉल की तरह और अ एकदम साइड में एक अंकल खड़े हुए देख रहे कि कहां से पानी आ रहा है।

तीन मूर्तियां हैं और साइड में एक कृष्ण और अ गाय का लगाया फोटो साइड में--

एक आंटी नीचे बैठी है एकदम सामने एक अंकल बैठे हैं नीचे।

ये एक रिटेल काउंटर करके लिखा हुआ है बैनर पे।

एक शॉप जैसे रिटेल का दिखाई दे रहा है और दो लोग बाहर खड़े हैं।

और वॉल का और साइड में जहां पे लोग खड़े हैं वहां पे येल्लो और रेड कलर का कलर किया हुआ है बा --

और उसके आजू बाजू पूरा पेड़ है और अम बहोत सारे ऑरेंज कलर के फ्लैग भीं हैं।

और कुछ ऑरेंज कलर में कुछ लिखा भी हुआ है।

यहां पे बहोत सारे फ्रॉक लगाया हुआ है लड़की लोग का।